फिर भी लोग घूमने आ --

ये एक कॉलेज है जिसका नाम है संजय सिंह यादव कॉलेज और ये बोहत ही लंबी है और --

डिनर करने आते हैं खाना खाने। अभी इसका बैलून का कलर रेड येलो पिंक व्हाइट ब्लू में है जो काफी खूबसूरत लग रहा है और ये सीढ़ी चढ़कर जाया जाता है।

ग्रिल लगा हुआ है उसका जो कलर है ब्लैक है और एक रूम भी दिखाई दे रहा है जिसमें चेयर लगा --